से पेंट किया हुआ है वाइट कलर का। उसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है। उसके सामने सीढ़ी है। सीढ़ी से चढ़के उस शॉप में जाना है।

और गाय बंधी हुई है और कहीं-कहीं दिखाई दे रहा है। कई वाइट कलर का पेंट है वो आदमी औरत गा गाय को देख रही हैं ।

आमने सामने उसके कार है। सीढिया है। छोटे-छोटे पेड़ है जो डेकोरेट के लिए है। पीछे भी

जो कि मुस्लिम है वो सिर पे कै टोपी लगाया हुआ है। उसके सामने ढेर सारी मछी ऐसे रखी हुई हैं एक के ऊपर एक। उसके सामने एक आदमी है जो ले रहा है।

और म मच्छी एक के ऊपर एक गझी हुई है। पीछे का दिवाल उसके वाइट और ब्लू कलर का कलर किया हुआ है।

और उसके पीछे डेकोरेट वाले छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं जो बोहोत ही सुंदर लग रहे हैं। उसके पीछे एक बोहोत बड़ी मंदिर है जो व्हाइट कलर से है और उस मंदिर --